रेड कलर का पेंट हुए है व्हाइट कलर का पेंट किया गया है और इसके पास एक टेंट लगा हुआ है और इस सब के पास --

और ऊपर लकड़ी की अलमारियां बन रही है और इसके आगे एक कुछ चीज रेड कलर की दिखाई दे रही है और इन आदमियों ने एक ने --

यह एक सूट की शॉप है जिसमें साड़ियां सूट वगैरह मिलते हैं इसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स भी काम कर रहे हैं।

दीवार भी कर्री करड़ की है और पिल्लर भी है और कुछ आदमी इधर उधर फिर रहे हैं और बीच में एक कुर्सी दिखाई दे रही--

और आसपास में बहुत से वृक्ष भी हैं जो कि हरे भरे हैं आसमान व्हाइट है।

व्हाइट शर्ट पहने हुए आदमी खड़ा है जिसके पास में बहुत सारे पुरस्कार--

यहां एक ऊंट है जो कि पत्थर का बना हुआ है और उसके ऊपर एक आदमी बैठा है और आसपास में बहुत सारे --

बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं जिसके अंदर बहोत उन्दी गुफा है जिसके अंदर बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है उस आदमी ने चश्मा पहना है हाथ में एक वॉच डाली है।

पतले पतले टायर दिखा रहे हैं यह रेडी लकड़ी की है और एक पास में--